यह एक मंदिर का दृश्य है इस मंदिर में टाइल्स लगा हुआ है इस मंदिर में तीन मूर्ति है।

यह एक खुले स्थान का दृश्य है इस स्थान में बहोत सारे टाइल्स के टुकड़े जमीन पे रखे हुए हैं और एक ट्राली में भी रखा हुआ है।

इस दृश्य में चेयर भी लगा हुआ है।

यह एक हॉल का दृश्य है इस हाल में बहुत सारे सीमेंट की बोरियां रखी हुई है।

दीवार पे पोस्टर भी लगा हुआ है।

सभी अलमारियों में ट्राली रखे हुए है और सभी अलमारियों में कुछ बैग भी रखे हुए है।

मूर्ति के बगल में घर है जो पीला कलर का है।

मूर्ति के बगल में और भी घरे हैं जो वाइट कलर के हैं।

नदी के बीचों बीच पुल बना हुआ है पी पुल के ऊपर एक युवक है जो कुछ सामान लिए हुए साइकल पर है।

यह एक हॉल का दृश्य है इस हॉल में बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो सभी बेंच पे बैठे हैं और कुछ बच्चे खड़े भी हैं।

दुकान के अन्दर कार्पेट बिछा हुआ है कार्पेट का कलर ग्रीन कलर का है।

इस बिल्डिंग में दो युवक है जो चेयर पर बैठे हुए हैं।

इस बिल्डिंग की खिड़की में कांच लगा हुआ है और रेलिंग पे स्टील का पाइप लगा हुआ है।

इस दृश्य में दो गाय हैं दोनों गाय घास खा रही हैं।

इस ग्राउंड में एक मकान भी है मकान का कलर व्हाइट कलर का है।

मकान के छत पे सोलर प्लेट भी लगे हुए हैं।

इस मंदिर के चारों साइड बाउंड्री है जो लोहे का किया हुआ है।

इस घर पर पलस्तर नहीं किया हुआ है।

ये पौधे भी है और फूल भी है इस दृश्य मे बड़े बड़े पेड़ भी है इस दृश्य मे बहुत लोग भी हैं।

इस हॉल में बहोत सारे लाइटें लगी हुई है।

उस अलमारी पे एक हैंकी रखा हुआ है और तीन पानी का बोतल भी रखा हुआ है और एक बेना भी रखा हुआ है।